जिसपे फेविकोल का यूज हो रहा है देखिए उनके पीछे दीवाल है दीवाल पर रेड कलर पूता हुआ है और मुझे उसके--

आप दीख रहे हैं यहाँ पर डास हो रहा है अ दो लड़की हैं दो लड़के हैं एक लड़की ने पूरे ब्लैक एक लड़की ने पूरे रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और एक ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं।

और दो बच्चे इस तरफ ही बैठे हुए है और मैडम बैठी हुईं हैऔर बहुत सारे बच्चे उस तरफ ही बेंच पर बैठे हुए है ए जिसपे देखिए पीछे तरफ़ विंडो भी है।

एक छोटी से लड़की को देखिए किती प्यारी तरीके से जिम कर रही है और बैलून लगे हुए है और कई चेयर में आदमी बैठे हुए है।

दिख रहे है एक हॉस्पिटल है जहां पर नर्स रजिस्टर लेकर बैठे उसके सामने देखिए गोली दवाई रखी हुई है और एक रेड कलर की चेयर है।

देख रहे है यहां पर मजदूर है और लेबर भी है जहा न ए लेंटर हो रहा है ये रॉट ए बिछी हुई है।

आप देख रहे हैं यह एक खेत हैऔर बहुत पीछे करके झाड़ लगे हुए कितनी जायदी बॉडी है और यह एक हार्वेस्टर खड़ा हुआ है जहां पर गेहूं की मतलब दानाई हो रही है ।

अभी यहां पर कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है बुलिडिंग पर और यहां से एक कार जा रही है और बहुत ज्यादे इंसान है ये कार पर कोई बैठा हुआ है।

ग्रीन पे है यहां दो आदमी बैठे हुए हैजो बोटिंग कर रहे है और इन्होंने पीछे तरफ भी देखिए झाड़ है जिसपे आसमान भी दिख रहा है।

जिसने पिली कॉलर की साड़ी पहनी हुई है और उस तरफ ही एक आदमी फूलवर को दे रहा है।

आप देख रहे है यह एक बहुत बड़ा ब्रिज है यहां पर एक नदी है ए इधर तीन और बॉयस खड़े है जिससे ये पत्थर है और मैदान है मैदान पर घास लगी हुई है।